कुछ लकड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर रेड कलर का फूल भी लगे हुए दिखाई दे रहे --

और नीचे कुछ टाईल्स लगी हुई है।

यह एक किला है। यह बहुत ही ऊँचा दिखाई दे रहा है | यहाँ --

और यहाँ पर कुछ कपड़े भी बाहर की ओर टंगे हुए दिखाई दे रहे --

और टिन सेट बना हुआ है। पीछे कुछ बड़ी सी दीवार बनी हुई है।

वह कुछ दस्तीया भी रखी हुई हैं ।

सामने एक स्कुल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर एक महिला और एक जेन्स है खड़े हुए हैं कुछ --

कुछ वाइट कलर के गजरे हैं और कुछ गेंदे के फूल के गजरे हैं और कुछ गुलाब के फूल के भी गजरे यहाँ पर दिखाई दे --

और बगलों में कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए --

जो की ऐ में खड़ी हुई है।

कुछ पिंक कलर केकुछ ब्लेक कलर के हैं और यहाँ पर बड़े-छोटे कई प्रकार के फूल लगे हुए --

और यहाँ पर बड़े-बड़े नारियल के पेड़ भी दिखाई दे --